स्कूटी में जाते हुए दिखाई दे रही है एक और ऑटो है जो की रेड कलर में दिखाई दे रहा है पीछे में पेड़ पौधा भी दिख रहे हैं।

यहाँ पर बहोत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे छोटी-छोटी घाँस--

यहा पर बहोत बड़ा हॉल जैसा दीखाई दे रहा है यहा पर बहोत सारी बेंचेस लगी हुई है।

एक सोफा दिखाई दे रहा है जो की वाइट कलर का है यहाँ पर बहुत सुन्दर डेकोरेशन हुआ है दो खिड़कियाँ जैसी दिख रही है जहाँ बस लाइटे लगी हुई है ऊपर में फुल भी लगी हुई है और बहुत सुन्दर दिखाई--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

यहाँ पर से एक बड़ा सा रास्ता गया हुआ हैंएक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जिसमे कांच की खिड़खिया लगी हुई हैं ऊपर मे और कुछ बना हुआ हैं साइड मे--

दो खंभे दिखाई दे रहे हैं तारे गई हैं और कुछ लोग नीचे मे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।